कचरा फैला हुआ है और पानी थोड़ा लगभग --

और थोड़ा दो चार सौ किलो मी --

और केवाड़ी गेट मस्त है का लिखाए --